अ साइड में हम एक बैनर देख पा रहे हैं जिसका ऊपर एक कुछ बिल्डिंग बना हुआ है।

सफेद कलर का सेंडो गंजी पहना और ब्लू कलर का जीन्स पहना है एक ने --

दो और दो एक ने ब्लैक कलर का पहना है ब्लू कलर का जींस पहना और एक ने--

इस फोटो के अंदर हम लोग एक मंदिर टाइप कुझ देख पा रहे हैं।

बना हुआ है। इसके एंट्रेंस में हम लोग कुछ भगवानों के चित्र देख पा रहे हैं। सामने में एक गेट दिखाई दे पड़ रहा हैं जो लोहा का बना हुआ हैं।

ऊपर एक लाल झण्डा देख पा रहे हैं साइड में एक पेड देख पा रहे हैं।

साइड हम लोग कुझिन बिल्डिंग देख पा रहे हैं तीन को पोल देख पा रहे हैं।

से एक बेड का कलर ब्लैक से किया हुआ और एक का ब्लू का कोवर दिया हुआ --

यहां सामने का जो बिल्डिंग है वो लोग ग्रीन कलर का देख पा रहे हैं।

यहाँ पर हम लोग एक चेयर देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर का है कोवर दिया हुआ है।

हम्म बहुत कुछ सामान रखा हुआ है जैसे एक स्प्रे रखा हुआ कॉलीन का --

सीरम रखा हुआ कुछ फेस सीरम रखा हुआ कुछ क्रीम रखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर दूर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो --

इसका सामने में हम लोग एक बरा सा ग्राउंड देख पा रहे हैं इस ग्राउंड में बहुत सारे--

इसके एकदम सामने में बोरा बोरा देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का है।

कुछ बहोत सारे इलेक्ट्रिक पोल देख पा रहें हैं इलेक्ट्रिक तार देख पा रहें हैं यहाँ पर और एक बाइक शीशा दिखाई दे रहा है।

गेंदा फुल देख पा रहे हैं गेंदा पीला और ऑरेंज का है।

इसमें कुछ व्यक्तियों का फोटो बना हुआ है जो वाइट कलर और ब्लैक कलर का पैंट बना हुआ है सामने में एक टब देख पा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग एक पौधा देख पा रहे हैं --

ब्रॉउन कलर देख पा रहे हैं जो फ्लोर लकरी से बना हुआ फ्लो --

ऊपर में हम लोग कुछ फोटो दीवाल में कुछ फोटो देख पा रहे हैं एक हमलोग अग्नि बुताओ जंत्र यँत्र देख पा रहे है।

पिंक कलर का है यहाँ पर एक बैनर देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है स्पेरिया ब्यूटी --

कुछ हम गहना देख पा रहे है कुछ नेल पोलिश देख पा रहे है गू --

बुद्ध देव की मूर्ति देख पा रहे हैं जोकि ब्लैक है कैलेंडर देख पा रहे हैं छोटा सा एक चेयर देख पा रहे हैं जो कि ब्लैक कलर का है साइड का जो दीवाल है वो टाइल्स लगा हुआ है।

ब्लू कलर का किसी ने वाइट कलर किसी ने ग्रीन कलर का किसी ने रेड कलर का --

उसके ऊपर हम लोग चार गो स्विच देख पा रहे है जिसमें से दो का कलर रेड है और--

यहाँ पर व्यक्ति को देख पा रहे हैं जो पीला और ब्लैक कलर का चेक शर्ट पहना हुआ है और ब्लू कलर का --

रोड का फोटो देख पा रहे हैं पीछे में लोग बिल्डिंग देख पा रहे हैं जो वाइट कल --

सामने हमें एक डम्फर देख पा रहे हैं जिसका कलर वाइट है इसका टायर का कलर ब्लैक है ऊपर हम लोग एक बोर्ड देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एच_एल_सी_टी --

जोकि व्हाइट कलर का है पीछे मतलब एक जगह देख पायेंगे --

उम ब्लू है और एक का कलर वाइट और चार कलर का है।

रेड कलर का यहाँ पर कुछ हम देख पा रहे है जोकि कल गोल्डन कलर का है।

एकदम सफेद कलर का टोपी सफेद कलर का कुर्ता सफेद कलर का पैंट पहना हुआ है।

वहां पर कुछ टेबल चेयर दिख पा रहे हैं जोकि ब्राउन कलर का है।

पाँच टो उम्म पिलर दिखाई दे रहा है जोकि ब्राउन कलर का नीचे में स्टील --

है यहाँ पर एक एकसेलेटर देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने में कुछ लिखा हुआ है मस्ती जोन उसका नीचे लिखा हुआ है डिसून सिनेमा --

सामने में एक मशीन दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू कलर का है --

देख पा रहे हैं कुछ खिरकी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने ब्राउन कलर का शर्ट पेहना और ब्लैक कलर का पैंट पेहना हुआ है।

यहाँ पर हम लोग बहुत सारे सामान देख पा रहे हैं रैक में यहाँ पर जैसे कि हरशी का सिराप देख पा रहे हैं।

कुछ यहाँ पे सोया सॉस देख पा रहे है विनीगर का बोटल देख पा रहे है।

पाँच भी देख पा रहे जिसमें लिखा हुआ गोल्ड प्लस गोल्ड कलर का है।

तौलिया रखा हुआ है पीछे हम लोग सींसा देख पा रहे हैं एक ऑरेंज कलर का डेस्क का ऊपर रखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर व्यक्ति को देख पा रहे हैं जोकि ब्लू और वाइट कलर का चेक्स शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ है।

पीछे लगा हुआ स्क्रीन के सामने में एक टप देख पा रहे हैं जिसने छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

इस फोटो के अन्दर एक रूम का फोटो देख पा रहे है इसका दीवाल का रंग सफेद और ब्लू है यहां पर एक मशीन देख पा रहे है।

कुछ कपड़ा देख पा रहे हैं गेट देख पा रहे हैं जोकि --

वाइट कलर है यहाँ पर कुछ सम्म एक बाल्टी देखो स्टील का है यहाँ पर एक ल ल ब्लैक कलर का कुछ उन बॉक्स दिखाई जैसे दे रहा है लाल कलर का छोटा छोटा डब्बा दिखाई दे रहे है डेस्क दिखाई दे रहा --

ए सी ऑरेंज कलर का है सामने में एक स्विच बोर्ड देख पा रहे जिसमें मॉरटीन जैसा कुछ रखा हुआ है।